एक फायर एक्सटिंग्विशर भी दिख रहा है।

दो प्लेट में चावल या पुलाव रखे हुए हैं।

सभी शीशे बहुत ही अच्छे हैं।

यहां पर तरह तरह के सोफे मिलते हैं।